इस रेस्टोरेंट में बहुत सारे टेबल --

इस दृश्य में एक शोरूम का चित्र है।

इस दृश्य में एक दुकान का चित्र है।

और टेबल और चेयर भी लगा हुआ है।

इस दृश्य में एक स्टेशनरी का दुकान है।

और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है।

और छोटे छोटे पत्थर और चट्टान--

इस पौधे में बहुत सारे पत्ते नजर आ रहे हैं।

इसमें बहुत सारे फूल रखे हुए नजर आ रहे है।

बड़े बड़े पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

और उसके अंदर बहुत सारे केक और पेस्ट्री रखा हुआ नजर आ रहा है।

और एक ऑटो भी लगा हुआ है जिसका कलर लाल है।

और काउंटर बना हुआ है काउंटर के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है।

इस दृश्य में एक दुकान का चित्र है।

और एक ब्लू कलर का पानी का बोतल रखा हुआ है।

और एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

इस दृश्य में एक बड़ा सा मस्जिद का चित्र है।

अ मस्जिद के छत पे चोंगा लगा हुआ है।

और लाइट भी जल रहा है।

इस चर्च में गॉड का स्टेच्यू बना हुआ नजर आ रहा है।

पंखे का कलर काला है मैट भी बिछाया हुआ है।

कुछ पानी फुहारे जैसा फेंक रहा है।

इस दृश्य में एक रेस्टोरेंट का चित्र है।

इस रेस्टोरेंट में टेबल चेयर और सोफा लगा हुआ नजर आ रहा है।

और स्टेज पे चढ़ने के लिए सीढ़ी बना हुआ है।

इस दृश्य में एक दो साइकिल का चित्र है।

और साइड में कुछ कार्टून भी रखा हुआ है।

और नीचे टाइल्स लगा हुआ है।